इसपे लिखा है यहां सभी प्रकार की बाइके रिपेयर की जाती--

और उसके सामने साइकल भी चला हुआ है।

बहोत सुंदर सी लाइट लगी हुई है और एक फैन भी रखा हुआ है।

ये एक मंदिर नजर आ रहा है जिसके साथ में बहोत सारी लेडीज बैठी हुई है।

ओ_एल_डी गोल्ड प्लस पी_एल_यू_एस और ये--

और एक बाल्टी रखी हुई है जिसके अंदर हल्का सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर की कुर्सी है और ब्राउन कलर की बेंच है जो डबल साइड है।

उसके सामने एक सीधा रास्ता है जो घर की ओर जा रहा है और चारों तरफ बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे र--

टेबल के ऊपर एक फैन है जो वाइट कलर का है और एक--

ये एक होटल है जिसपे टेबल और व्हाइट कुर्सियां रखी हुई है इसमें एक लंबी लाईन है जिसपे ब्लैक कलर की कुर्सिया--

इम पानी का प्योरी भी रखा हुआ है ब्लू कलर का।

इसमें एक दो तीन चार पांच पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर हल्की सी धुंध भी नजर आ रही --

और सामने एक टेबल है उसके साथ कुर्सी है और एक खिड़की नजर आ रही है जिस पे व्हाइट पर्दा रखा --

ये पौधे ग्रीन कलर के है और जिसमें ये रखें--

इसमें एक बोहोत बड़ासा गेट लगा हुआ है।

उसके बाहर एक बाइक भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है शिमला वॉटर कैचमेंट --

और ये बोर्ड चॉकलेटी कलर का है और उस पे वाइट और येलो कलर का डिजाइन बेस पे लिखा --

और उनके ऊपर बोहोत सुंदर से बंध दिखाई दे रहे हैं यह पूरा ग्रीन कलर का नजर आ रहा है और इसके बीच में कुछ रास्ता भी रखा हुआ है।

ये दोनों काली नजर आ रही है और वो एक गाय कैमरा को देख रही है और एक गाय का मुंह ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है।

ये एक आदमी नजर आ रहा है जो अपनी बॉडी की फोटो ले रहा--

उसके सामने एक करोड भी दिखाई दे रही है।